कपड़े दुकान का चित्र है।

यहां पे एक बड़ा सा ग्रिल भी लगा हुआ है जिसमें ब्राउन कलर से पेंट किया गया है।

यहां पे ग्रीन कलर के कारपेट भी बिछाए गए हैं।

इसमें बहोत सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है।

जिसके ऊपर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यहां बहोत सारी सजावटे की गई है जहां बहोत सारे गुब्बारे और रीबन लगे हुए हैं।

सामने में सनलाइट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है।